यहाँ पर लाइन से कपड़ा सब लगा हुआ होता है। कोई भी आकर यहाँ पर इन कपड़ो को देख सकता है और ले सक --

एक लेडी है जो भाषण सुन दे रही है।

इसके आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे हैं बल्ब है।

ये सब्जी मंडी है यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग-अलग सब्जियाँ बेच रहे है यहाँ पे बहुत सारे आदमी सब्जियाँ ले भी रहे है |

एक आदमी इन्हे समझा रहें हैं। ये ऑफिशियली किसी काम से जुड़े होंगे और ये किसी चीजे के स्कीम को समझा रहें हैं।

वाइट कलर की एक घर बने हुए हैं और इसके आगे एक ट्रक टाइप का बनाया गया है इसमें बच्चे खेल उल भी सकते हैं और आदमी भी पेड़ पौधे लगाते हैं ।

और इनसे लोगों को बहोत सुविधा मिलती है।